पेड़-पौधे भी हैं जो बहुत ही बढ़िया है बेहतरीन है।

यहाँ पे मुझे एच.डी.एफ.सी. का एक बैंक देखने को मिल रही है ।

आसमान सफ़ेद है जिनकी वजह से ये टावर दिखने में और ज्यादा से ज्यादा अच्छी लग रही है ।

इस जगह पे छोटे-छोटे पेड़-पोधे भी हैं।

एक बड़ा पेड़ भी है और बहुत ही बढ़िया लग रही है एक बालक भी है ब्यूटीफुल है अच्छी है।

और ये ब्रिज बहुत ही बड़ा भी है और बढ़िया भी है।